घर हई कए तल्ला घ स्कूल हई कए तल्ला स्कूल हई एक दू तीन तल्ला स्कूल हई ओन्ने एगो बस लागल हई पेड़ हई कएगो पेड़ हई एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो।